बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं पीछे की तरफ जो की पीले रंग के --

इस फोटो में एक कार है जिसके ऊपर प्लास्टिक चिपकाए जा रहा है।

इस फोटो में दूर एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है जो की सफेद रंग का है।

और दो दुकान बंद है जिन पे शटर लगे हुए हैं और एक तरफ के शटर का रंग हरा है।

इस फोटो में एक प्लेट है जिसके अंदर कुछ चीजे रखी हुई है।

इस फोटो में एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

बस का रंग भी सफेद है दूर एक स्कूटी भी लगी हुई है।

बहुत सारी बल्ब लगी हुई है लेकिन बल्ब जल नहीं रहे हैं।

दीवाल का रंग स्किन कलर है।

एक व्यक्ति डिवाइडर के ऊपर चढ़ रहा है।

एक कुर्सी भी है जो की भूरे रंग की है और बगल की दीवार सफेद रंग की।

बहुत सारी चीजों से सजाया गया है।

उपर एक टंकी बना हुआ है।

इस फोटो में एक हरे रंग का बहुत बड़ा लेथ मशीन है।

एक झूमर भी लगा हुआ है और बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें भी जल रहीं हैं।

अंदर एक गेट भी बना हुआ है।